मुझे इस चित्र में पेन दिख रहे हैं मुझे इस चित्र में सेल दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में आसमान दिख रहा है मुझे इस चित्र में धुआं निकलता दिख रहा है।

बहोत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे इस चित्र में पेड़ दिख र--

मुझे इस चित्र में टेंट दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक पंखा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे उसमें कॉलम का रंग लाल दिख रहा है मुझे पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में कीलास लिखा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक वॉटरफॉल दिख रहा है।

मुझे इस चित्र मे धराती दिख रही है मुझे इस चित्र मे मछली कटी हुई दिख रही है।

मुझे इस चित्र में गेट दिख रहा है।